जहाँ पे कुछ उ दो लोग खड़े हुए है कुछ लोग छत के ऊपर हैं।

यहाँ पे एक बा बड़ा सा व्हाइट कलर का घर दिख रहा है | जिसके बाल्कनी पे एक लेडी खड़ी हुई है | अ जो अंकल रिक्शा के पास खड़े हो उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है ।

डेम के पास में काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और-- यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ हैं ब्रिज के गेट खुले हुए हैं।

स्कूटी है व्हाइट कलर की उसपे एक लडकी बैठी हुई है जिसने व्हाइट एण्ड ब्लैक कलर के कपडे पेहने है एक लडका है जिसने चेक्स शर्ट पेहनी है वो इस डेयरी कि ओर जा रहा है।

नीचे स्काई ब्लू कलर का हैं जिसके स्टेचू रखा हुआ हैं यहाँ पे पेड़ हैं घर में रेड कलर किया हुआ हैं।